और उसके सामने में एक बड़ा सा गेट है जो की एक मट्टी कलर से रंगा हुआ --

इसमें एक लड़की झंडा लेके खड़ी हुई है जो की भारत माता का झंडा है और पीछे एल.ई.डी. टी.वी. लगा हुआ --

और सामने जो सरस्वती माता का एक पोस चित्र बना हुआ बहुत ही सांदा --

दही रसगुल्ला पनीर-उनीर बहुत सारा समान खरीदने के लिए यहाँ बहुत सारे आदमी यहाँ खड़े हुए लाइन में लगे हुए --

यहाँ पे रखे और अलग-अलग कलर में बहुत सारे दवाई रख --

इस पोस्टर में जो दिख रहा है इसमे एक कोचिंग का प्रचार किया गया है जिसमे लिखा है जे.सी. बोस फिजिक्स क्लास ।

बहोत ही अच्छा दिखने मे लग रहा है और एक बाइक का डिक्की एक कार का जो डिक्की है खुला --

और बहुत ही शानदार सा माल है जो कि बहुत ही शानदार सा बुक इसमें पड़े है।

तस्वीर दिख रहा है। एक बैंक का पिक है जोकि एस.बी.आई. बैंक है जोकि बोहोत ही शानदार एस.बी.आई. बैंक है और सामने जो है एक बाइक खड़ी हुई है उसके बगल में एक साइकिल खड़ी है।

ये जो पिक जो दिख रहा है ये जो कुछ कागज के अलग-अलग सा आ आकार में चित्र बनाये हुए हैं । कागज का जो की बहुत ही शानदार सा चित्र हुआ है बना हुआ है और बहुत ही अच्छा सा है जो कि एक अ अलग-अलग कलर में बने हु --